खड़ी हुई है। पिंक कलर दिख रहा --

फ्रेश स्टिक लाइट्स हैं। पीछे पौधा हैं बहोत बड़ा।

बोहोत सारे लोग नारे बंदी जू --

कुछ लिखा हुआ हैं लेकिन बहुत ब्लर है।

टिंग्स वगेरा भी लगाया --

रहा है और पौधे दिख रहें घर दिख रहा बहोत पीछे दो तीन मंदिर भी दिख रहें।